वे बाहर की तरफ तीन साइड पड़ी हुई है और उसकी छत पर दो पंखे लगे हुए हैं।

वह स्टेज को फूलों और पर्दों द्वारा सजाया गया है।

यह एक सिमट से बना गया चबूतरा है जिसके ऊपर लकड़ी की तीन बेंच रखी हुई है।

और पास में ही एक बोर्ड रखा हुआ है।

और सफेद रंग के दो पंखे भी टंगे हुए हैं।

और सामने की तरफ ई स्मार्ट इन्वेटर वे डोल कूल लिखा हुआ है।

और इसकी एक तरफ बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और एक तरफ छोटा सा पेड़ लगा हुआ है।

जो स्टील तांबे और पीतल वगैरह के हैं।

इसका गेट शीशे का बना हुआ है और नीचे फर्श भी हुआ हुआ है।

यह एक टेंट की दुकान है।